बीच में रास्ता है तथा आसपास दो बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ लोग अपनी तस्वीर निकलवा रहे हैं तथा यहां पे बोहोत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

एक अस्पताल दिखाई पड़ रहा है जहां पे बहुत सी बैंच पड़ी हुई है। बेंच का रंग काला है यहां पे बहोत आदमी बहोत से आदमी बैठे हुए हैं जिसमें एक आदमी लेटा हुआ है।

घर है जो देखने में बहुत बड़ा व सुंदर है। इसका रंग सफेद है यहां पे एक पेड़ है जो बहुत सुंदर लग रहा है।